और बहार दो पाइप है एक आदमी खड़ा हुआ है उसने ब्लू कलर की शर्ट पहना है अंदर ग्रीन कलर की चेयर दिखाई दे रह है जो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है।

और ऊपर आसमान है और नीचे ग्रीन ग्रीन घास है दिखने मे अच्छा लग रहा है पेड़ है पेड़ो मे हरी-हरी पत्तियां है और जैसे की बहुत सारी चीजे यहाँ पे देखने के लायक है।

ये जगह है जहाँ पर ब्लू ऑरेंज और वाइट कलर का यहाँ पर कुछ लोग है टू व्हीलर मे टू व्हीलर मे है एक आदमी हेल्मेंट लगाए।

और गाड़ी पर बैठा है ब्लैक कलर का बैग टांगे और यहाँ पर पीछे ग्रीन ग्रीन पेड़ दिख रहे है और कुछ लोग पैदल है कुछ लोग गाड़ी मे है।

और बहुत सारे ग्रीन ग्रीन पेड़ नज़र आ रहे है और छोटी-छोटी बारीक़-बारीक़ यहाँ पे गिट्टी डली हुई है और एक थो टीन शेड भी है जो हमे नज़र आ रहा है और एक टावर भी--

देखिये यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे है कुछ लोग सीढ़ी के नीचे बैठे हुए है कुछ लोग सीढ़ी चढ़ रहे है है।